एक कार है जो कि सफेद कलर की दिख रही है और उसके आस सामने एक आदमी बैठा है उसके हाथ में कुछ मशीने दिख रही है।